और एक बैग दिखाई दे रहा है।

इसमें पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

और दो आदमी भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें काफी लाइट भी दिखाई दे रही हैं।

इसमें ऊपर ऑपरेशन करने वाली लाइटे भी दिखाई दे रही हैं।

इसमें दो कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

इसमें एक मैरिज हॉल दिखाई दे रहा है।

और इसकी साइड में एक प्राप्ति काउंटर भी है।